यहा पर बिल्डिंग बन रही है।

हमे यहा पर एक डेअरी दिखाई दे रही है। और उसकी गेट पर फूल लगे हुए है।

और एक सायकिल लगी हुई है।

पानी के अंदर एक ब्रिज बना हुआ है और जिसके कॉर्नर पे एक छोटा सा रूम बना हुआ--

हमे यहा पर एक एरोप्लेन दिखाई दे रहा है और उसके सामने हमे एक कार दिखाई दे रही है और हमे नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

हमे यहाँ पर एक ब्रीज दिखाई दे रहा है ब्रीज के नीचे से पानी जा रहा है और हमे कुछ--

हमे यहा पर दो छोटे-छोटे कमरे दिख रहे है।

हमें यहां पर एक पहाड़ दिखाई दे रहा है और उसके साइड में खाई दिखाई दे रही है और--

उसके ऊपर एक रॉड और रॉड मे प्लेट लगी हुई है और पीछे हमें --